यहां फिजिक्स केमिस्ट्री बॉयलोजी मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है।

बहुत सारे आदमी का फोटो हैं इसमें गमला में पेड़ लगाया गया है छोटा-छोटा पेड़ --

थोड़ा रेत में बना हुआ है नीचे-नीचे पेंट वो दिवार पेंट किया हुआ है लाइट लगा हुआ है इसमें ।

जिसमें प्रिंसेस लिखा हुआ है और बैलून से सजाया जा रहा है रिबन है।

और इधर टावर है बिजली का तार है इसमें अगल-बगल घास आया हुआ है कीचड़ है बहुत सारा।

और एक आगे कुर्सी है और चापाकल है मकान है और उधर टीना भी है एक पेड़ भी है --

और एक हौंडा साईन आ रहे है एक वहाँ बूढ़ी औरत जा रही है और वहाँ एक --

ई ये जीरा राइस है और --

एक लेडीज भी है जिसके एक हाथ में ब्लै एक ब्लैक कलर का बैग है।